एक औरत है जिसके पैर दिख रहे हैं कुछ सैंडल पहने हुए ब्लैक कलर के ऊपर खुला असमान है सामने से एक इमारत है उसके चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ खड़े हुए हैं और एक रेलिंग लगी हुई है चारों तरफ वो स्वीमिंग पूल के--

एक लोहे की जाली है कुछ कबूतर है कुछ हंस है सफ़ेद कलर के और कुछ बगल से एक स्विमिंग पूल है जिसमें कुछ नीली है साइड से कुछ--

जो की ओरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं बगल में एक बैग रखा हुआ है सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं चारों तरफ से पेड़-पौधे हैं और हरियाली है और पत्थर है और नीचे चारों तरफ से--

कुछ लोग खड़े हुए हैं जो की रेड बैंगनी कलर की शर्ट पहने हुए हैं कुछ नीचे सर पे गमछा लगाये हुए हैं बगल से कुछ मशीने रखी हुई है कुछ कत्थई कलर की मशीन है पीछे जमीन पर कुछ पत्ते डले हुए हैं नीचे एक व्यक्ति--

सामने खुला आसमान है जिसमे चारों तरफ से पेड़-पौधे लगे हुए हैं और नीचे एक रेलिंग लगी हुई है एक पेड़ है फूल है जोकि गुलाब का एक कमल का फूल है जो पिंक कलर का फूल है।

इतने बड़े-बड़े पेड़ पौधे हुए है कुछ पतियाँ लगी हुई हैं नीचे कुछ हरे-हरे घास है ऊपर पूरा आसमान है।

बड़ा-सा पर्वत है उसके चारों तरफ बड़ी-बड़ी खड्डे बने हुए हैं| एक बड़ा-सा एक बड़ा जो एक पेड़ है जो की एक अ बड़ा-सा एक सिला है और एक लोहे का सिला है सामने से एक--

एक सड़क निकली हुई है एक कुत्ता घूम रहा है उधर चारों तरफ से खुला आसमान है कुछ कंकड़ और कुछ पत्थर और कुछ मट्--

नीले कलर की टाइल्स है जिसमें पानी बेह ऊपर पानी बेह रहा है चारों तरफ से कुछ पेड़-पौधे बगल से एक इमारत है जो की येलो कलर की है।